यह एक जंगल है जंगल में बहोत सारे जानवर दिख रहे है यहाँ पे हरी-हरी घास भी उगी हुई है यहाँ बहोत सारे बांस है।

यहाँ रोड पे एक ब्लैक कलर की ए ए बस खड़ी हुई है।

बस के अंदर कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं यहां खिड़की खुली हुई है।

बस के बाहर एक आदमी खड़ा है जो की रेड कलर की टी-शर्ट पेहना हुआ है एक लड़का बस में चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है।

यहां पीछे एक टावर दिख रहा है बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

नीचे भी लाइट रखे है ब्लैक कलर के सामने एक लड़का खड़ा हुआ है।

यह एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है मंदिर --

डिजाइन बनाई गई है मंदिर के नीचे।

यहाँ एक ग्राउंड दिख रहा है ग्राउंड में चारों ओर खंबे लगे है खंबे से --

यहां पे जालियां बांधी गई है यहां कुछ लड़के लोग फुटबॉल खेल रहे हैं कुछ लड़कों ने वाइट कलर की टीशर्ट रखी है यह --

ग्राउंड में हरी घास दिख रही है और कुछ लड़के यहां बैठे हुए दिख रहे हैं।

एक हॉल है हॉल में कुछ बच्चे।

दर परदे के पीछे एक खिड़की दिख रही है दरवाजा लगा हुआ दिख रहा है।

यह एक तीन शर्ट से बनाया गया रूम दिख रहा है।

यहां छोटे-छोटे बॉक्स में सामान दिख रहा है यहां रेड कलर की कार खड़ी हुई है।

यहां पे कुछ भगवान की मूर्ति दिख रही है यह कार के चके भी दिख रहे हैं ब्लैक कलर के --

--लगाई गयी है यहाँ बहोत सारे लोग दिख रहे है।

रखे हुए है यहाँ माउंट पेपर की कटिंग रखी हुई है।

ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई है बीच में टीचर बैठी है पीछे इन लोग के --

यहाँ एक भवन दिख रहा है इसके ऊपर एक झंडा लहरा रहा है यहाँ सामने एक --

खम्बा दिख रहा है यहाँ बहोत सारी गाड़ियां है गाड़ियों में कुछ लोग खड़े हुए है।

पेन्टर के सामने देख रहे हैं एक छोटा सा लकड़ी का ठेला बनाया गया है यहां कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है।

और ग्रीन कक टेबल रखा हुआ है टेबल के ऊपर एक गिलास दिख रहा है।

पर नीचे ग्रीन कलर का दिख रहा है ऊपर छोटा सा पेड़ दिख रहा है साइड में लाइट लगे हुए हैं।

यहाँ एक टेबल रखा है और स्काई ब्लू वाइट कलर का टेबल के सामने पर्दा लगा हुआ है।

यहाँ पे रेड पिंक ग्रीन कलर के फूलों से सजाया गया है।

यह एक बहोत बड़ा हॉल दिख रहा है यहाँ बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ बनी हुई है।

यहां दरवाजे दिख रहे हैं ब्लैक कलर के जो कि खुले हुए हैं।

ऊपर अअ ब्लू कलर के पर्दे दिख रहे है कांच के अंदर से यहाँ बहोत सारी लाइट लगी हुई है।

ब्लैक कलर की स्वेटर रखी है नीचे अलमारी में बहुत सारे कपड़े रखे हैं।

अ बाउंडरी वॉल खींची हुई है इसमें एक अ येलो कलर की सीढ़ी बनी हुई है सामने एक पेड़ दिख रहा है।

और यहां आसपास कुछ तोरण लगी हुई दिख रही है यहां पे कुछ --

खेत में कुछ गेहूं की फसल उग रही है पीछे पेड़ भी दिख रहे हैं।

व सोकेज बना है सोकेज में बहुत सारा सामान रखा हुआ दिख रहा है।

यहाँ कुछ थैली टंगी हुई दिख रही है यहाँ टोकरी भी रखी है बीच में सीढ़ी बनी है जाने की --

यह एक गोल्ड सिनेमा दिख रहा है स्क्रीन बहुत बड़ी है।

यहां पे अंदर कुछ लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक बौद्ध समाज की मूर्ति दिख रही है मूर्ति के नीचे वाइट कलर का बनाया गया है बैठने का --

नीचे यहां पे साइड में एक दान पेटी रखी है जो कि चैन से बांधी गई है।

वाइट कलर शर्ट पेहन के लड़का खड़ा है उसने ब्लू कलर की जीन्स पेहनी है और ब्लैक कलर का--

प्लेटफार्म शेड ब्लू कलर का दिख रहा है प्लेटफार्म में कुछ पेड़ भी लगाए हुए दिख रहे हैं।

यहां आसपास कोई नहीं दिख रहा है मालगाड़ी बहुत लंबी है।

यह एक एन. डी. साइंड बैंक है।

बैंक में ए_सी भी लगी है।

गेंदे के फूल की माला दिख रही है कुछ गेंदे के फूल में यहाँ वाइट कलर की माला दिख रही है यहाँ खम्बे --

कुछ पेड़ सूखे वाइट कलर के दिख रहे है यहाँ आस-पास पहाड़ियाँ दिख रही है।

यहां साइड में कुछ दुकानें हैं यहां फोर व्हीलर और बाइक खड़ी हुई है।

आगे कुछ सामान रखा हुआ दिख रहा है।

रेड कलर के बैलून से हार्ट बनाया गया है नीचे भी रेड कलर के बैलून दिख रहे है ऊपर ए_सी लगी हुई है कुछ येलो और पर्पल कलर की रिबन लटक रही है बैलून से --